दो दुकानों के पास सामने खड़ी हैं एक आदमी है सिर्फ जो कि सड़क से गुजर रहा है।

सजी हुई है मेहमान बैठे हुए हैं टेबल्स पे और बहुत प्यारी डेकोरेशन जो है वो ऊपर से हुई हुई है।

एक इंडियन जो है वो प्लेस है जिसके अंदर कोई तकरीब का मनकद किया गया तकरीब--

को और उसके बाहर एंट्रेंस पे जो है वो भगवान की मूर्ति रख के वहां का इफ्तेता किया जा रहा है और उसको सजाया गया--

भगवान की मूर्ति मूर्ति बनी हुई है जिसके अंदर दो हैं बैठे और एक बांसुरी राधा--

रोड जो है चल रहा है जिसके आस पास जो है टैटू की शॉप है जिसके ऊपर काफ़ी जोकर टाइप टैटू वगेरा बने हुए है और उसके पास से जो है --

म्यूजियम है म्यूजियम के अंदर जो है शीशे के अंदर एक मूर्ति पड़ी है और कुछ पुरानी जो उनकी--

कंपनी है कम्पनी छोटी सी कंपनी है जिसके अंदर जो है नेम ऑफ़ सर्विसिंग लिखी हुई है सेविंग बैंक रजिस्ट्रेशन --

सन सेट है सूरज जो है वो इस टाइम गरूब हो रहा है पार्क के पास बिल्कुल एक--

कार वॉश करने का जो है कार वॉश एंड रिपेयरिंग का शोरूम है जिसके अंदर काड़ों कारों को जरा ऊपर--

लगे हुए हैं और छोटे-छोटे पौधे में है एक गाड़ी जो है बिल्डिंग के बिल्कुल पास खड़ी हुई है।

ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है बहुत बड़ी जिसके अंदर छोटे-छोटे से कमरे बने हुए हैं और इसकी एंट्रेंस पे जो है मूर्तियां पड़ी हुई--

ये एक बहुत बड़ा मंदिर है जहाँ पे दो मेल जा रहे है पैदल चल के ।

ये एक ऐडवरतिसेमेंत का ऑफिस है जहाँ पे लोग अखबार आता है इश्तीतिहार वगेरा आके छपवाते है ।

और एक इशारा करके बैठा--

और उसके नीचे एक ग्रास ग्रास वाला प्लांट भी है।

ओर दो आदमी जो पेंट शर्ट ओर जेकेट पेहन के खड़े है।

यहां पे खाने पीने की हर किस्म की सहूलयात वगैरह हैं जो कि हमें शौक इसमें--

ज़ो की पता नही कहा जा के खतम होती है तो उस रोड में एक आदमी भी है जो की काले रंग पहने सफ़र कर रहा है ।